अ जो कि ये पत्थर बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

और एक साइड पे एक नीले रंग का डब्बा बना हुआ--

और बस के साथ एक दरख्त है जिसके ऊपर नहीं है और साथ एक छोटा सा पौधा बना हुआ हैं।

और एक बोर्ड सामने लगा हुआ जो कि सफेद रंग के हैं उसके ऊपर एक लड़की और लड़का बने हुए हैं और ऊपर दूध के पैकेट बने हुए हैं।

एक लड़की है जिसने सिर पे टोपी की हुई है नीली शर्ट काली पेंट पहनी हुई है।

इस तस्वीर में एक आदमी का कंधा नज़र आ रहा है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है और एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी नज़र आ रहे है जो की बेंच में बैठे हुए है --

ये एक ज्वेलरी की दुकान नज़र आ रहा है जो की अ जोकी हर तरफ़ ज्वेलरी दिखाई दी रही है और इसमें आदमी बैठे हुए है और --